मुझे यहां पर एक ओर धारा में स्टेडियम दिखाई दे रहा है।

लोहे की ग्रिल लगाई हुईं हैं।

एक मैडम योगा सीखा रही है।

यहां पर एक चप्पल की दुकान दिखाई दे रही है।

मुझे यहां पर बहोत सारी दुकाने दिखाई दे रही है जोकि एयरटेल की है।

ये धानस लेक दिखाई दे रहा है।

खड़े हुए नजर आ रहे हैं।

पार्क के बीच एक पत्थर है और उसे पत्थर के बीच पानी निकल रहा है और उसके आसपास पेड़ पौधे भी है।

और उसके पास बहोत बड़े बड़े घर भी है।

और वहां पर बहुत सारे स्कूटरी बाइक खड़ी करी गई है और एक कार भी है।

शॉप दिखाई दे रहा है और यहां पर--

पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं और--

मुझे यहां पर बहोत सारी लड़कियां डांस करते हुए नजर आ रही है।